आकृति बनी हुई है पिलर दिखाई दे रहे है दीवार दिखाई दे रही है जो की स्लेटी रंग की है अंदर जाने का मार्ग --

नारंगी रंग का है उसपर आकृति बनी हुई है पीछे एक बहोत बड़ा घर दिखाई दे --

रखी है जो की सफ़ेद रंग की है वह जलती हुई नजर आ रही है एक इस्टिक है जो कि काले रंग की है।

नीचे का फर्स जहां पे मिट्टी फैली हुई है वो सिर्फ उस झूले पे चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है आस-पास हरे-भरे पेड़ दिखाई दे --

बनी हुई है एक कप है जिस पे लाल पिले रंग की धारियां पड़ी हुई हैं उस पर पट्टी की आकृति बनी हुई है यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में कुछ कप दिखाई दे रहे है जो की अलग-अलग रंग --

यह एक बिल्डिंग है जो कि सफ़ेद रंग की है इसकी खिड़कियाँ दिखाई दे रही हैं आस-पास बिजली के तार दिखाई दे रहे हैं नीचे के फर्श है जहाँ पर बसें खड़ी हुई हैं बस नीले रंग की है।

चरों तरफ फैली हुई है हरे-भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं बीच में एक मार्ग दिखाई दे रहा है जो की उस पर मिट्ठी फैली हुई है और चारो तरफ हरी हरे पेड़ दिखाई --